यह एक नहर है जहाँ नहर में से पानी बह रहा है आस-पास मिट्टी की दीवारे बनी हुई हैं।

तथा एक कंप्यूटर स्क्रीन रखी हुई है।